यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
फिलहाल normal टैब चुनित हैं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
अब insert और slide पर click करें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
after चुनें और ok click करें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
ध्यान दें कि font बदल गई है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
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं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
colour में हुए बदलाव को देखें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
recommendations नामक slide को चुनें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
text में हुए बदलाव पर ध्यान दें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
इस व्यापक नियत कार्य की कोशिश करें
एक नयी प्रस्तुति बनाए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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद